यहां ये बाइक ठीक करने वाले के दुकान पे खड़ी हुई नजर आ रही है।

वे कुछ अध्यापक भी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

आसमान में बादल छाए हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक बीच में लड़की ने हमारे देश का झंडा लिया हुआ है।

सभी कुलरों का रंग सफ़ेद दिखाई दे रहा है।

जहाँ व्यक्ति योगा करते दिखाई दे रहें हैं।